ये लड़के के पीछे में वाइट कलर का घर है।

पंखे के साइड में बहुत सारी लाइट लगाई गई है।

एक आदमी कॉमपीटर चला रहा है।

आदमी के साइड में एक वाइट कलर का कुर्सी है।

यह एक साड़ी का दुकान है।

दुकान के सामने बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

गैस के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है।

पहाड़ के नीचे में बहुत सारे घर हैं।

पीछे में एगो बड़ा सा टी_वी जैसा है।

पोस्टर के ऊपर बहुत सारे लाइटे लगाई गई हैं।

यहां पर एक सैलून दुकान है।

यह एक टॉयलेट स्टोर है।

फूल के सामने एक कैमरा लगा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे बैलून अलग- अलग रंग से टंगे हुए है।

सामने में एगो मूर्ति रखा हुआ है।

इस होटल मे बहुत सारे आदमी बैठें हुएं हैं।

यह एक सोनार का दुकान है।

यह एक राशन का दुकान है।

सामने में दो लड़की खड़ी है।

शीशा के ऊपर बहुत सारे लाइट लगाए गए हैं।